यह एक चौराहे के सीन है जिसमें कई गाड़ियां आना-जाना कर रही है।

जो अ कोई कलर के पेंटिंग बानी हुई है और उसके बाहार अ बोहोत ही सुंदर नजारा दिख रही है।

सभी नन अपने तरह-तरह के पोशाके पहनी हुई है।

जो देखने में सभी बोहोत ही सभी सुंदर दिख रहे हैं और सभी इसे अपने कैमरा में कैद कर रहे हैं।

जिसमे पानी की फवारा निकल रही है और अ रंग-बिरंगे कलर से सजे हुई है।

सुन्दर-सुन्दर राखियाँ टंगी हुई है और दुकान पंडाल जैसी बनी हुई है यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है।

वहां पे प्लेयर अपने खिलाड़ी अपने प्रेक्टिस करने के लिए आना जाना करते है।

यह दृश्य एक दूकान की है जो नई ओपनिंग की तरह लग रही है। इसमें बैलून से सजी हुई --

बिल्डिंग ये नई बन रही है और किनारे-किनारे आने-जाने के रास्ते बनी हुई है।

यहाँ हा यहाँ सामने एक आने-जाने के रस्ते बने हुई है। रेलवे ट्रैक किनारे बिछि हुई है।